ऊपर निला आकाश साफ देखा जा सकता है सामने एक गेट लगा हैं।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जैसा कुछ देखा जा रहा है जो की नीले और सफेद रंग का है जिसपे एक सफ़ेद रंग की बोर्ड भी लगी हुई है।

और अगल - बगल में से कुछ महिलाओं को भी जाते हुए साफ देखा जा सकता है यह देखने में बहुत अच्छा है।

और भी कुछ पेड़ पौधे देखे जा सकते है यह देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहै है सामने की तरफ --

यहा पर बहुत सारे झूले एक साथ देखे जा सकते है अगल बगल में बहतु सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहै है एंड सामने से जाने के लिए बहुत सरे रस्ते बने हुए है।

यह एक मॉल का इमेज हैजहाँ पर बहुत सारी सामाने एक साथ रखी हुई देखी जा सकती है ऊपर बहुत सारी लाइटे लगी हुई है नीचे एक --